यह खुला मैदान है जहाँ ईट से गिरावट कर थोड़े -थोड़े जमीन में कर-कर के रखी हुई है ।

यहाँ बैठ के कुछ लोग खा भी रहे हैं कुछ लोग आस-पास जा रहे हैं।